गोल्ड प्लस शो करता है ट्वेंटीफूर कैरेट गोल्ड शो करता है इसमें लाल कलर होता है लाल किला सेट है। लाल किला से ट्रेन ट्वेंटीफोर कैरट गोल्ड है।

ये एक राहन चाय स्टोर चाय करफ़ी है राहन चाय स्टोर करफी चाय रही है चाय मेंकिग करता है एक छोटे-छोटे पान सेटर है।

यहाँ एक ख्रिश्चन चर्च है यहाँ छोटे छोटे लड़कियाँ अच्छा है एक छोटे लडकी अच्छा है एक सड़क पर जाते है।

खाना खाते है यहाँ छोटे-छोटे अच्छों मे दौड़ लगाना है। सड़क पर--